एक आयरन में बहुत सारा पेड़ भी उठा हुआ है।

ये का कलर है व्हाइट और खिरकियां के कलर है ब्राऊन ।

मुझे इस पिक्चर पर फ्लैग भी सीरी का आगे लगा हुआ दिखाई दे रही है।

मुझे यहा पर डांगीस दिखाई दे रही है और मुझे यहां पर खुला आसमान दिखाई दे रही है और मुझे यहां पर पेड़ भी दिखाई दे रही है।

खुला आसमान दिखाई दे रही है।

मुझे इस पिक्चर पर समुंदर दिखाई दे रही है।

और में काम कर रहे हैं इंसान लोग।

तस्वीर पर मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारा सामान मौजूद है जैसे कि हो गया चिप्स भुजिया यूटेंसिल्स का सामान ऑइल मौजूद है।

मुझे खुला आसमान भी दिखाई दे रही है पेड़ भी दिखाई दे रही है और दीवार भी ब्लू कलर की दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर पर मुझे गरिया दिखाई दे रही है बहुत सारे और बाइक भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर पर मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है और दुकान का नाम है वी टू और यहां पर बस लड़का ही मौजूद है।

फिजिकल एरिया जिसे दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर पर मुझे एक बैनर दिखाई दे रही है जहां पर कॉम्प्लेक्स बिम्बोर जीरो प्वाइंट डिस्ट्रिक्ट बोर के लिखा हुआ है।

दो टंकी ब्लू कलर का मौजूद है और एक दुकान पर कोमोड सब बेच रही है और एक दुकान में लोहा भी बेच रही है।

वहां पर चार लड़की और तीन लड़का है।

मुझे इस पिक्चर पे एक बस्ती दिखाई दे रही है जा में इंसान भी है लड़का लड़की।

दु घर है और एक गाड़ी है सफेद कलर का और एक बाइक है जिसका हैंडल में हेलमेट लगा हुआ है।

ऊपर में लरका है और वहां पर सुपर सीट भी रखा हुआ है बैठने के लिए।

इस तस्वीर पर मुझे दुकान दिखाई दे रही है जहां पर दो इंसान मौजूद है एक थोड़ा जवान और एक थोड़ा बुड्ढा।

रेड कपड़ा पहना हुई है और इसके एक हाथ एक मुट्ठी बनाके है और एक कान के सामने खुल के है।

इन ग्रीन कलर कि चेयर दिखाई दे रही है एक इंसान की आधा बॉडी दिखाई दे रही है।